हमे यहाँ पर पानी दिख रह है बहुत सारा ये कोई लग रही है और यहाँ एक नाव रखी हुई है जो --

यहा दो नाव खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक ब्लू कलर की है एक व्हाइट कलर की है और उपर छतरी लगा हुआ है ग्रीन कलर का और हमे पेड़े भी सामने दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमे बहूत सारा पानी दिखाई दे रहा --

यहाँ पर हमें एक तुलसी को टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर हमे प्लस का निशान दिख रहा है और हमे सामने --

वाइट कलर अ की गेट भी दिखाई दे रहा है एक निचे ब्लू कलर का छोटा घमला रखा हुआ दिख रहा है।

सबी प्रकार की मछलिया दिखाई दे रही है एक महिला स्टूल पर बैठी हुई दिखयी दे रही है और एक तोलने की मशीन भी रखी हुई दिख रही है।

हमे यहाँ पर बहुत सारी जिम की मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है ये कोई जिम की पीक है जिसमे ब्लैक कलर की जिम के मशीन रखी हुई दिख रही है।

यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा मंदिर दिखायी दे रहा है जो पुराने ज़माने का है इसमें हमें प्रवेश द्वार भी दिखाई दे रहा है और --

हमे यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे हमें घास लगी हुई दिख रही है बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

ये हमें मंदिर का प्रवेश द्वारा दिख रहा है।

है जो की ब्लैक कलर का है उप्पर जाली लगी हुई है ओर बीच मे हमे उन्ह कुछ लकड़ी सी लगी दिखाई दे रही गेट बहुत सुंदर लग रहा है और हमे अंदर से पेड़ दिखाई दे रहे है दो।

बहुत सारी मशीन रखी हुई है जो ब्लैक कलर की है ऊपर हमे दो बल्ब दिख रहे है।

नीचे हमे येलो कलर के दिखाई दे रहे है।

यहा पर हमे बहुत सारे गुलदस्ते एक के उपर एक रख सड़-सीढीयो पर रखे हुए दिखाई दे रहे है।

रेड कलर का पेंट दिख रहा है उपर एक घड़ी भी दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की दिख रही है।

यहाँ पर हमें बहुत सारी भगवान की फ़ो मूर्ति दिखाई दे रही है कुछ कृष्ण की है कुछ कुछ राधा के साथ कृष्ण है गाय भी है।